ये एक स्कूल है बहुत सारे बच्चों लोगों को पढ़ा रहा है।

एक अच्छी बात है बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छा है।

उसके सामने बहुत उनका मां लोग भी खड़े हैं उधर--

एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्यूटी पार्लर है जो कि लड़की के लिए बहुत खूबसूरत बनाता जगह है ये--

ये एक चि चिकन शॉप है हर कोई चिकन पसंद करता ही है।

तो ये अ ये अ एक ऐसा दुकान है उसका पास और भी दुकान है वहाँ एक बंदा खड़ा हो के फोन पे बात कर रहा है।

यहाँ पे कुछ चिकनकार ये होता है ऑफर होता है।

यहाँ पे एक बंदा आराम से बैठा है और उसको इतना सुकून मिल रहा है वहाँ पे वहाँ का जगह पानी --

घर के लिए जो जाके ले सकते हैं ग्राेसरी आइटम ।

जो हम शोरूम में जाके खरीदते है बहोत सारे लोग है वहां पे टू व्हीलर फोर व्हीलर कार बाइक --

बाहर से तो देखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है अच्छा है ये शोरूम ।

और उसका आसपास जो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है उसका कलरफुल ग्रीन कलर --

उधर एक ब्लू कलर का बोर्ड है पता नहीं उसमें क्या लिखा है मेरे को नहीं दिख रहा।

उसका बाजू में ग्रीन कलर का पेड़ है।

इतना दूर से देखने में त तो ये तो बहुत खूबसूरत है उसका--

लेकिन आदमी तो कोई नहीं है कोई किसी का तोलिया है वहां पे लाइट है बहुत खूबसूरत एक बेडरूम है अच्छा है।

बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन अभी उधर कोई नहीं है।

ये एक ग्रोजरी आइटम है यहां पे हर कोई जाके अपना अपना घर के लिए सामान लेते--

ये कुछ ऑफिस देख दिख रहा है जहां पे अभी तो कोई नहीं है।

और पीछे दीवार में लक्ष्मी मां का माता जी का फोटो चढ़े हैं।

बहुत ही खूबसूरत से इसको सजाया गया है जो बाहर इनका फोटो है।

बहुत सारे लोगों को जिनको भी बुढा वालों को बच्चों को बड़ों को सबको आईसक्रीम पसंद है।

और यहां पे जो केक है बहुत ही सुंदर एक ला येलो और पिंक कलर का--

के कुछ लंच प्लानिंग का है प्लेट में राइस सैलेड और कुछ दाल--

जहां पे फ्रिज वाशिंग मशीन --

फैन ऐसा हर कुछ सामान यहां पे मिलता है उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है लाइट सेटिंग वहां का जो भी प्रोडक्ट्स है बहुत सुंदर है।

और ब्रेड ऐसा काफी सारा है आइटम है यहां पे लेकिन कोई लेने वाला आदमी नहीं है।

एक बहुत ही सुंदर सा एक गेट हैजो अभी नया घर लग रहा है उनको बना के अभी फिनिशिंग पूरा नहीं हुआ है।

बहुत ही अच्छा है बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो लाइट्स एक खूबसूरत पूरा ऐसा देख रहे हैं।

उनका जो भी है काम कर रहा है वहां पर दो बंदा खड़ा हुआ है।

लेकिन बहुत बढ़िया स्कूल है गार्डन बहुत अच्छा है।

काफी सारा ऐसा कुछ है देखने में तो बहोत सुंदर--

बोल नहीं सकते और बाड़े बड़े पेड़ हैं।

ये कुछ ऐसा दुकान है कुछ सांडविज पिज़्ज़ा ऐसा कुछ खाने का मन लगे तो हम चटपस से चले जाते हैं ना।

ऐसा एक दुकान है अभी तो कोई नहीं है वहां पर जो लाइट है बहुत ही खूबसूरत है।

और बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है अभी उसमें नहीं दिख रहा है।

लेकिन अभी वहां पर कोई नहीं है जो थोड़ा टूटा फूटा है।

नमाज पढ़ने का जगह है जो भगवान रहते हैं वहां पे सब लोग।

नमाज कर रहे हैं काफी सारे लोग हैं।

ये ऐसा एक जगह है जहां पे पूरा के पूरा जगह हमको एक ही साथ दिख सकते हैं।

तो यहां इतना ज्यादा बिल्डिंग है काफी सारा--

यहां पे कुछ डयन फंक्शन चल रहा है बच्चों का स्कूल का लगता है डांस चल रहा है।

ये एक पार्टी हॉल था जो पार्टी के लिए हम जाते है ना हां कुर्सियां पूरा रेडी होके--

सब लोग बैठ के पार्टी चिल कर सकते हैं अच्छा है देखने में--

बहुत सुंदर सा टोकरिया है और अलग-अलग शेप में है।

वहां पे कोई बैठा हुआ है एक बच्ची है आसपास पूरा ग्रीन कलर का पौधे हैं।

और ये बंदा अभी इसके अंदर नहीं है अच्छा है।

सब्जी का दुकान है ये जहां पे काफी सारी सब्जियां हैं।

कैरेट अ बनाना और एक बंदा वहां पे खड़ा है नींबू है।

ये कुछ हॉस्टल जैसा दिख रहा है जहां पे बच्चा लोग अभी बैठ के होमवर्क कर रहे हैं पढ़ रहे हैं।

बिकती है ना हां जो वॉश बेशन ऐसा कुछ।

और नीचे भी कलरफुल वाला जो है ना रेड --

ये एक ऑफिस है जहां पे लोग--

पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही काम भी करते हैं।

जो बच्चों को लेके आए जाके हम छोड़ते हैं।

लेकिन बहुत अच्छा हैबाहर काफी ज्यादा बच्चों का--

फोटोस हैऔर गाड़ियां है कलरफुल है देखने में तो बहुत अच्छा है बड़ी बिल्डिंग है।

एक कुमार फर्नीचर हाउस है यहां पे काफी ज्यादा फर्नीचर्स मिलता है।

जो भी सामान चाहिए फर्नीचर अच्छी वाला चाहिए।

और बारिश हो गई है शायद इसीलिए पूरा गीला है।

और वाइट कलर का कुछ उसका पानी के अंदर है लाइट सेटिंग है।

और ये देखने में तो बहुत सुंदर है इसमें सब कुछ मिलता है उसका जो भी डिटेल है।

दो बाइक है दो हेलमेट हैवो भी ब्लू कलर बाइक ब्लू कलर है।

और देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन आसपास कोई आदमी लोग नहीं है।

और ये घर भी बहुत अच्छा है आसपास एक कार है एक गाड़ी है।

और बहुत दूर तक है क्यों--

ये एक हॉस्पिटल है डेंटल हॉस्पिटल जो हम दांत दर्द करके जाते हैं ना--

ये एक हॉस्पिटल है वहां पे बहुत सारा ऐसा सामान है जो दांत के लिए रिलेटिव्स है।

चेयर है कुर्सियां है और मेडिसन है लाइट सेटिंग तो बहुत ही अच्छा है खूबसूरत है।

यहां पे सब कुछ मिलता है लोग जाके यहां पे खाना खाते हैं एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ है।